देखने में काफी सूरत लग रही है। देखने मे अच्छा लगती है। कै आदमी भी --

फल-फूल का बगीचा है देखने मे काफी सुंदर लग रही है।

कोई आदमी जा रहा है कोई आदमी बैठल है।

यहाँ पे बहुत सारे लड़की भी है डांस भी कर रही है कोई ब्लू कलर का कपड़ा पहनी है कोई हल्दिया रंग कि कपड़ा पहनी है।

दो आदमी बैठ के देख --

यहाँ पर एक गेट है और स्कूल भी है कोई लेडिस आ रहे हैं दो लड़का है वो भी जा रही है रास्ता भी है बहुत पेड़ पौधे लगाए हुए बाकी मे बहुत खूबसूरत बहुत अच्छा लग रही है।

बहोत सारे आदमी है वही पेर की गाँच है बहु देखने में काफी सूरत लग रही है कोई आदमी ठा --

कपड़ा भी है ब एक बहुत चुंदड़ी है एक मच्छरदानी है लग रही --